जैसा की मै यहाँ पर देख पा रही हु यहाँ पर गोडाऊन बना हुआ है यहाँ पर काफी बोरे रखे हुए है और यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई है जिस पर बोरे लगे है।

जैसा की इस दृश्य में मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक होटल बना हुआ है जिसका नाम ब्लू डायमंड दा होटल है।

कही-कही पर कुछ घाँस भी दिख रही है एक आदमी बैठा हुआ है जो की इंची टेप से पत्थर को नापता हुआ दिख रहा है ।

इसमें दो बत्तख तैरती हुई दिख रही है यहाँ पर दो कमल के फूल भी नजर आ रहे हैं।

रखा हुआ है यहाँ पर एक काउंटर बना हुआ है काउंटर पर बहोत सारे सामान कुछ सामान दिवार पर टंगा हुआ है।

स्टाइलिश मेंस सैलून का बोर्ड लगा हुआ है साथ में यहाँ पर पर्दे लगे हुये है।

इ मस्जिद दिख रही है जिसका एक गेट बना हुआ है मस्जिद के ऊपर या अल्लाह या मोहम्मद लिखा हुआ है मस्जिद में दो मीनारे दिख रही हैं।

कयूएल कोबरा ऑटो का बोर्ड लगा हुआ है जिसमें की --

कुछ ऑटो दिखाई दे रहै है बोर्ड पर लाइट जलती हुई दिख रही है।

इस दृश्य में मई देख पा रही हु ये एक दिवार है दिवार पर एक पेन्ट हुआ है जिस पर सेन्ट्रल स्टेडियम --

का नाम बेकरी वर्ल्ड लिखा हुआ है वहा पर गुबाड़ो से बहुत सजावट की हुई-हुईं है।

के निचे कुछ गाड़िया खड़ी हुई है जिसमे की कुछ कार कुछ बाइक है।

दृश्य में मै देख पा रही हु यहाँ पर एक झांकी बनी हुई है जिसमे की सरस्वती जी की तस्वीर बनी हुई है वो अपने हाथ में --

पर सामने एक वेन खड़ा हुई है बिजली का एक खम्भा लगा है जिससे सब तरफ तार --

ऊपर एक कनारा बैंक का बोर्ड लगा हुआ है दो लड़के खड़े हुए है और एक लड़का एक औरत बैठी नज़र आ रही है।

ऊपर एक बोर्ड ( सांस्कृय मेन्स वियर का भी दिख रहा है और यहाँ पर दुकानों के आगे थोड़ा सा मैदान सा है ।

ये जेसीबी दिख रही है पेड़ो की छाया जमीन पर पड़ती नजर आ रही है।

ये दृश्य में मई देख रही हु एक नदी दिखाई दे रही है नदी के पीछे की तरफ बड़े-बड़े से --

उसी के पास में एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है पीछे की तरफ बड़े-बड़े से --